बड़ी सी टप बाल्टी कुर्सियों की दुकान है। उस दुकान के बाहर कुछ कुर्सियां टप बाल्टी --

पोलीश पुती हुई है। स्कूल के अन्दर बड़े से पेड़ लगे हैं।

तीन काले रंग के पंखे लगे हुए हैं उन पंखो के नीचे तीन लाल रंग की कुर्सी बिछी हुई है।

दुकान की छत पर सफ़ेद रंग की इ लाइट जल रही है।

रोड के ए बगल में बड़ा-सा लाइट के तार का खंभा लगा है उस खंभे के बगल में मकान-सा बना है। उस मकान के बाहर सेलोन का बड़ा-सा पोस्टर --

एक मोटर साइकिल रखी हुई है उस मोटर साइकिल इल के सामने ए चार गमले ए रखे है उन गमलो ओ के उपर सीरिज लगी हुई है।

पो मे दुकान का नाम लिखा है। दुकान नो के सामने तीन --

बड़ी सी जूते-चप्पल की दुकान न है।

और कमरे में एक सफेद रंग का बल्प लगा हुआ है।

हैं और सफेद रंग के पंख लगे हुए हैं। दुकान के अंदर बोहत सारे बैठने के छोटे टेबल रखे हैं।